यख मा जी एक बड़ी बारिकी इमारत छा ईं इमारत की रैलिंगो फण कई सारी रंग बिरंगी लड़ी जगण लगीं छन।

यख मा जी एक पीला अर सफ़ेद रंग कि ऑटो रिक्शा कर लगण लगीं च।

यकमा जी कई सारा लड़का लड़की भी बेठ्या छन यखमा जी खिड़की छन यक दिवाल म जी एक पोस्टर बी लग्यूं छा।

यख मा जी कई सारी ऑटो रिक्शा छन यख मा जी कुछ रंगली पिंगली छन यूं पर लाल अर नीलू पीलू रंग होयुं छा।

यख मा टाइटल्स लगी छन यख मा जी कई सारा माकन छन यख मा जी गेट छलुहा का पाइप की रोड छ यख मा जी बिजली का तार छन यख मा जी रंग बिरंगा झंडा लग्यां छनयख फणा हरयां भर्यां डाला भी छन।